ए कार छे वाइट कलर के फिर ओकर एक आदमी झोला लेक जाय रहेल छे। ऊपर ओकर बाद छे वाइट कार छे |

फेरे अ बगल में पीला रंग क अ दीवाल छे फिर टाइल्स लगल छे निचे मा फिर पंखा भी छे बॉल छे।

मकान बन रहल छै फिर बांस बहुत सारा लगल छै फेर सेट्रिंग तख्ता लगल छै कांटी लगल छै रड लगल छै।